अच्छा दिखा रही है और वहां खेत भी है वो खेत से--

अह मूर्ति दिखा रही हैं और वहां--

कुछ दुकान हैं यहां तो तरह तरह के सामान दिखा रही है और यहां पैकेट भी ज्यादा हैं।

और वहां तो कलर कलरफुल लाइट्स और जेंडा भी है और दो लोग पैदल चल रहा है।

यह तो कुछ फलों की सब्जी का दुकान है यहां तो सीताफल दिखा रही है और टमाटर भी है और सीताफल और बैंगन और कर करेला और कुछ करीपत्ता--

ये तो प्लेग्राउंड है। यहां तो नीचे एक घास सब कुछ है।

और वहां तो वहां तो कुछ ज्यादा लाइटस् दिखा रही है और ओ--

ये तो कुछ कालि प्लेस है यहां तो पेड़ पौधा ज्यादा दिखा रही है और वहां बेंच के ऊपर दो लोग बैठा हुआ है।

सब कुछ ज्यादा अच्छा हैं दिखने के लिए और ऊपर से आकाश भी दिखा रही है।

और ये तो सूखा हुआ घास जैसी दिख रहा हैं।

खड़ा हुआ है वो तो व्हाइट रंग शर्ट और ब्लू जींस पहना हुआ है।

उम मुर्गी का फार्म है यहां तो ज्यादा मुर्गियां है ये अंडे--

अंडे देती है इसके इससे चिकन भी--

बनाते हैं चिकिन से ज्यादा आइटम् बना सकते हैं हम लोग चिकन बिरयानी चिकन फ्राई चिकन सिक्सटी फाइव इस तरह की ज्यादा-ज्यादा --

ये तो एक चर्च है और वहां पर जीजस का स्टेचू दिखा रही है वो--

नीचे अ फ्लोर है ना ब्लू कलर का दिखा रही है और ऊपर से आकाश भी दि--

ये आ ये नीचे फ्लोर में सब कुछ लाइट --

ये तो कुछ पार्क जैसे है यहां तो ल लकड़ी से बना हुआ--

कुछ स्टेच्यू हैं और वहां झूला भी हैं।

छोटा छोटा पौधा भी दिखा रही है गमले पे और वह एक बिल्डिंग भी दिखा र--

यहां पे एक रोड दिखा रही है और वहां एक--

पर्वत भीं दिखा रहीं हैं और वहां तो कुछ पेड़ भीं हैं और यहां तो आकाश है ना ज्यादा नीला रंग के दिखा रहीं हैं ये सब देखने के लिए ज्यादा अच्छा हैं।

अ दुकान जैसी हैं यहां तो बाइक्स भी हैं और अ पीछे एक अं--

पेड़ भी दिखा रही है और वो बढ़िया वाटर टैंक भी दिखा रही है और यहां ज्यादा खाली प्लेट --

यहां तो एक पुराना बिल्डिंग हैं ये तो ज्यादा बढ़िया बिल्डिंग हैं।

बिल्डिंग के ऊपर ए कुछ बोर्ड भी लगा हुआ हैं।

और यहां तो ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है जय जगन्नाथ फूड शॉप नाम लिखा हुआ है और यहां भी हैं।

यहां तो एक बढ़िया बिल्डिंग है ये तो दो स्टेज का है इस--

ये तो हरा रंग का बिल्डिंग है और नीचे एक डस्टदंप की--

बैठ के फोटो ले रही है फोटो ले रही है और एक आदमी पीला रंग का शर्ट पहना हुआ है और एक आदमी ऑरेंज शर्ट पहना हुआ है।

अपनी जैसे पेहना हुआ हैं और वहां उर्दू में कुछ लिखा हुआ हैं और वह पीला रंग का कुछ--